यहां पे पेड़ को काट के बहुत सारा बैठने का शीट बनाया हुआ है।

बहुत सारे लोग भी यहां बैठे हुए हैं।

बहुत सारे लाइट्स भी जल रहे हैं।

यहां पे कुछ महिला है जो कि योगा कर रही है ।

और पीछे की तरफ कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं ।

ये एक फोटो है शायद किसी पार्क का और--

बहुत सारे पेड़ पौधे लगाये हुये हैं।

साइड में सोफा लगा हुआ है।

एक आदमी है जो कि फोन चला रहा है ।

पीछे की तरफ भी कुछ लाइट्स जल रहे हैं ।

सामने मिरर लगा हुआ है बड़ा सा--

बहुत सारे पेड़-पौधे लगाए हुए हैं।

जो कि कान में ईयरफोन लगाया हुआ है।

बेड पर सफेद चादर और तकिए हैं।

ये एक फोटो है और किसी जगह का लग रहा है जहां--

पेर के ऊपर कुछ बैनर है छोटा सा--

ये एक फोटो है किसी डांस क्लास का और --

बहुत सारे बच्चे यहां पे डांस करते हुए दिखाई दे रहे है।

चारों तरफ से पार्क जैसे हैं।

ये एक फोटो है किसी जिम का और--

कुछ टेबल और कुर्सी भी लगा हुआ है.

ये फोटो किसी स्कूल का है और--

और कुछ बच्चे हैं जो पीछे खेल रहे हैं।

योग्य एवं ध्यान केंद्र का--

और नीचे की तरफ काले रंग का गा कार है।

यह एक फोटो है किसी जगह का और--

बीच में एक वाइट टेबल है बड़ा सा।

ये फोटो है जिम का और--

कुछ बिस्किट का पैकेट रखा हुआ है ।

कुछ पानी का बोतल्स है पेंट का।

एक फोटो भी है पीछे के दीवार पर।

साइड के दीवार पर बड़ा सा टीवी है।

एक आदमी है जो सबकी फोटो ले रहा है।

यह फोटो है और इसमें--

बहुत सारे प्लेट्स रखे हुए हैं।

खिड़की है शीशे का।

बहुत सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं।

पीछे की तरफ खाली मैदान है।

कुछ लोग नीचे बैठे हुए भी हैं।

एक किसी मार्केट का फोटो है ।

और ऊपर में ढेर सारे गमले और पोर्ट्स रखे हुए हैं.

है ढेर सारा।

यहां फूलों का बालूंस बनाया हुआ है।

एक लड़की है जो कि फोटो ले रही है।

यहां कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जमीन पर।

यहां पीछे दीवार पर कुछ पोस्टर हैं।

ये एक फोटो है यहां किसी शैलून का है।

यहां एक गोल शीशे का टेबल है।

यहां ढेर सारा दुकान है।

यहा एक फोटो है किसी होटल का।

यहां छोटे बास भी गड़े हुए हैं।

ये एक फोटो है किसी रेस्टोरेंट का।

ये एक फोटो है किसी मैदान का।

पीछे के तरफ बहुत सारे पैर हैं।

यहां कुछ घांसे हैं।

यह एक तस्वीर है किसी होटल का।

यह एक तस्वीर है किसी दुकान के बाहर का--

यहां कुछ लोग हैं पीछे के तरफ।

यहां बहुत सारे है।

नीचे कुछ कार्टून है।

ये एक फोटो है किसी नदी के किनारे का।

यह एक दस फीट है।

यह एक तकिया है।